एक बड़ा सा दुकान है।

एक शटर है जो कि नीचे गिरा हुआ है व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

ये ऑफीस है ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं।

काउंटर इधर भी हल्का दिख रहा।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

आठ गो पोस्टर लगा हुआ है।

बाइक भी है एक दुकान पीछे में भी है जो खम्मा जैसा है।

दुर्गा जी हर कलर के कपड़े पहने हुए हैं सिंगार उनका हुआ है।

उस पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है।

रैक पर बहुत सारे खरबूजे भी हैं केले हैं गोभी है।